बहोत अच्छे-अच्छे मैकेनिक होते हैं जो की गाड़ियों को ठीक करते हैं और--

यहाँ पे काफी दूर-दूर से लोग आते हैं और घूमते-फिरते हैं।

और यहाँ से बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक के समान किस्तों में किया जाता है।

लोग आते हैं और यहाँ पे बाल दहाडी बनाते हैं यहाँ काफी अच्छे से बाल काटा जाता है।

और यहाँ पे फल बहुत ही सस्ते दामों में दिए जाते हैं जिसके कारण इस ठेले में काफी भीड़ होती है।

यह एक ग्राउंड है और यह ग्राउंड काफी बड़ा है।

और यह मेडिकल स्टोर काफी बड़ा है।

मेडिकल स्टोर में दवाइयां खरीदते हैं यहाँ दवाइयां काफी अच्छी मिलती है।

इस प्राइवेट स्कूल में काफी सारे पढ़ते है।

यहाँ पे काफी अच्छे-अच्छे डॉक्टर होते है जो कि इलाज करते है।